कुछ बोरवेल दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ एक सड़क दिखाई दे रही है जिस पर कुछ मट्टी और रेत पड़ा हुआ है।

जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर शर्मा ऑडियो लिखा हुआ है।

सामने कुछ लाइटिंग दिखाई दे रही है जिसमें छोटे छोटे वूफर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक लाइन लगती दिखाई दे रही है जो कि ए_टी_एम मशीन के आगे लगी हुई है।

सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं पीछे की तरफ एक घर दिखाई दे रहा है।

इसमें सामने से एक पर्दा दिखाई दे रहा है और नीले रंग के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ रस्सियां लटकी हुई हैं जिन पर कुछ सीट लगी हुई हैं।

और एक सामने फोटो के शुरुआत में ही एक और दिख रहा है शिशा।

इस फोटो में सामने कुछ फूल की बड़ी बड़ी दुकाने दिखाई दे रही हैं।

और सामने कुछ फूल खरीदते हुए आदमी दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में सामने एक टेपलर दिखाई दे रहा है टेपलर पर एक पेंटर पेंट कर रहा है जो कि कुछ लिख रहा है।

इस फोटो में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक सुरंग दिखाई दे रही है।

फोटो में एक काउंटर लगा हुआ है जो कि स्टील का काउंटर है।

और शीशे पर कुछ बड़े सा बल्ब रखा हुआ है नीचे की तरफ स्टीम करने वाला एक कुकर रखा हुआ है।

इस पर मां शाकंभरी देवी मंदिर प्रवेश द्वार लिखा हुआ है जोकि गोल्डन रंग से लिखा हुआ है।

और एक पेड़ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूर की तरफ देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर एक सिर पर टोपी रखी हुई है एक लड़की ने पिट्ठू बैग वेयर कर रखा है।

इस फोटो में सामने एक लड़की का सिर दिखाया गया है जिसने दो चोटियां बना रखी हैं।

सामने एक रैक दिखाई दे रही है जिसमें एक लाइटर रखा हुआ है।

और एक ए_टी_एम दिख रहा है नीचे की तरफ दो तीन आदमी बैठे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा मंदिर का गेट दिखाया गया है ऊपर की तरफ मंदिर पर लिखा हुआ है श्री मंदिर हनुमान जी टोला--

नीचे की तरफ एक बड़ासा लकड़ी का दरवाजा दिखाया गया है जिसमें आदमी आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

कुछ स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ बाइके इस दिखाई दे रही हैं सामने ठेला खड़ा हुआ है जिसके पास में एक आदमी खड़ा--

सामने ऊपर एक प्लग दिख रहा है और एक स्विच दिख रहा है।

और सामने कुछ गड्ढे बने हुए हैं पीछे की तरफ कुछ तरल दिख रहे है छोटे से --

इस फोटो में सामने एक दुकान दिखाई गई है जिस पर एक लड़का खड़ा हुआ है और एक लड़का मुंह नीचे करा हुआ खड़ा हुआ है सामने एक मेज दिखाई दे रही है जिस पर एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है।

पीछे की तरफ कुछ मेज पर पॉट रखे हुए हैं जिन में फूल रखे हुए हैं।